बाली बिछाया हुआ है और चॉक से स्क्वायर दिया हुआ है ।

तीन चार लोग खड़े हुए हैं । एक बाइक के साथ खड़े हुए हैं स्‍काई कलर की शर्ट पहने हुए हैं ।

और बॉथरूम टाइल्स से चिपका दिया है ।

एक बैंक दिख रहा है ।

एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है ।

देख के पता लग रहा है ये --

और रास्‍ते के उस साइड में दो --

दो ब्लैक टी-शर्ट पेहने हुए है | एक व्‍हाईट टी शर्ट पेहने हुए है ।

भीगे कपड़े रख रहे हैं और बच्‍चे लोग खेल रहे हैं ।

और एक रॉयल बेंगोल टाइगर का स्‍टैच्‍यू भी दिख रहा है ।

एक रस्‍ता दिखाई दे रहा है रस्‍ते के बीचो-बीच एक छोटा सा मंदिर दिखाई दे रहा है ।

एक ऑटो खड़ा हुआ है साइड में एक स्टेचू है ।

झरने से पानी निकल आ रहा है | बोहत अच्‍छी लग रही है दिखने में |

लोकेशन अच्‍छा लग रहा है और मंदिर के आसपास बोहत सारी पेड़ खरे हुए हैं ।

और ये लोकेशन पूरा नेट से कवर किया गया हुआ --

पर्वत दिख रहा है | जोकि बरफ से ढका है ।

यहां पे एक पत्‍थर दिख रहा है | पत्‍थर के बहुत डिजाईन दिख रहे हैं और इसके अंदर --

पेस्‍ट पाउडर सोप सब कुछ मिलता है।